वहाँ तैयार लगे हुए हैं पिलर के लिए सब कम्प्लीट है छत्त में

सामने एक और मंदिर है जोकि अंदर वाले एरिया है| मंदिर के एक साइड में एक बेंच है लकड़ी की बैठने की और कुछ नहीं है आस-पास।

आस-पास कोई नहीं दिख रहा है एक चर्च है पीछे साइड पेड़ लगी है चर्च के।